काफी खूबसूरत यह नजारा है जो इसमें काफी खूबसूरत नजारा है इसमें एक पुराने ढंग का बन हुआ है जिसके ऊपर एक बोर्ड भी टंगा हुआ है इसके बहार कुछ इसके साइड में बड़े -बड़े गार्डन बना हुआ है जो इसे अच्छा बना रह है।

यहां एक रोड दिख रही है रोड काफी सुंदर लग रही है रोड काफी लंबी चोडी दिख रही है काफी पक्की सड़क की रोड नजर आ रही है यह काफी लंबी है इसके चारों ओर बिल्डिंग दिख रहे हैं।

कंपाउंड बना हुआ है कंपाउंड के बाहर एक मेनगेट बना हुआ उनमे लोहे की गेट लगा हुआ जो काफी सुन्दर लग रहा है।

इसके सामने गुलंबर बना हुआ है। जिसमें बहुत सारे पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं जो काफी अच्छे लग रहे हैं जो दिखने में इसमे इसका ग्राउन्ड काफी हरा भरा है। इस --

यहां एक घर दिख रहा है यह घर काफी पुराना दिख रहा है यह घर काफी ऊंचा नजर आ रहा है यह घर काफी सुंदर लग रहा है। यह घर मे खिड़कियां दिख रही हैं।

ये एक खुला मैदान दिख रहा है जो किसी स्कूल घर का खुला मैदान है जो काफी साफ़ सुथरा लग रहा है काफी साफ सुन्दर है यहाँ पर बहुत बड़ा मैदान है जो काफी हरा भरा है इसके चारोओर काफी बड़ी लम्बी चौड़ी बिल्डिंग बनी हुई है।